पेड़ नजर आ रहे है। इसमें नीचे की साइड में पीछे बहुत सारी गाड़िया भी खड़ी है। जिनसे लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते होंगे।

ये तस्वीर एक छोटी सी दुकान की तस्वीर है देखने पे हमें लगता है की इस दुकान फूल पौधे और कई सारे रंगों वाली चीज मिलती है।

ये देखने में बहुत साफ़ सुथरी नजर आती है| निचे जमीं पे टाइल्स लगी है और पीछे बहोत सारे शीशे लगे है।

अब इसकी हालत कई खराब लग रही है। आस पास मे बोहोत सारे छोटे मोटे पत्थर पड़े है लेकिन इन्हे देख के लगता है कि ये काफ़ी ही बड़े बड़े पत्थर होंगे इनको अच्छे से लगाया गया है।